बहुत सुंदर सजावट की गई है चटोरा पठान कोट लिखा है।

दो तीन लड़कियां योगा कर रही है पास में पानी की बॉटल रखी है।

यहां बहुत सारे फूल लगे हुएं हैं सामने पीले रंग के फूल हैं।

यहां एक बहोत बड़ा गमला सेंटर में रखा है जिसने की बड़ा सा फूल का पौधा लगा हुआ है।

सामने बिजली का मीटर और स्विच लगे हुएं हैं।

दीवार पर नोटिस बोर्ड लगा है।

अंदर एक बड़ी सी बिल्डिंग हैं जो की एक स्कूल की हैं। यहां बहोत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

सामने हाथ में मिठाई का डब्बा पकड़ा हुआ है।

कुछ पत्थर भी नीचे दिख रहे हैं।